मेरे चित्र में हम एक हॉल देख रहे है जहा जो की बहोत ही सुंदर सजाया गया है उसके सामने--

और इस ऑफिस के सामने लोगो की भीड़ नज़र आ रही है लोग काफी मात्रा में यहाँं पे खड़े है और कुछ लोग यहाँं पे सामने ऑफिस में देख रहे है कुछ लोग बैनर की तरफ देख रहे है।

और ये जो दफ्तर है इसको पीले और ग्रीन कलर के कॉम्बिनेशन से कलर किया गया है और लोगों की भीड़ देखकर यहाँ पर कुछ--

जो टुक टुक रिक्शा को चलाने के लिए ऊपर चढ़ रहा है यानि यहाँ पर जो दुकान देख रहे है यहाँ पर ऑटो रिक्शा मिलती है नई एकदम।

यहाँ पर चित्र देखने पर हमे एक रस्टॉरंट का चित्र है जहा पर गेसो गले लिखा है यहाँ पर।

अ तंदूरी मुर्गा वगेरा तंदूरी कुछ सामान मिलता होगा इसलिए यहाँ पर ग्रिल का नाम का मेंशन किया गया है।

जो की क्रिस्चियन यानि सारे लोगो के धर्म का प्रतीक है और--

उनका गाया हुआ को संगीत मिल सके और बहोत ही सुंदर लगे सुन ने में और भी--

एक बहोत बड़ा ऑफिस का हॉल है यहाँ पर जहा पर ब्लैक कलर सोफे चारो तरफ लगे है बैठने के लिए।

आराम से बैठ सकें यहाँ आराम से बैठ के यहाँ पर कार्य कर सकें अपना चाहें तो यहाँ पर इंतज़ार कर सकें।

इस चित्र में हम सड़क का दृश्य देख रहे हैं सड़क पर अ लोग ढोल बजाते हुए जा रहे हैं उन्होंने नीले कलर की पारंग--

एक ही तरह के पिलर्स लगे हुए हैं यानि एक ही पिलर ने दोनों बिल्डिंग के दोनों अ उसको दोनों मंजिलो को थामा हुआ हैं उसको संभाला हुआ हैं।

में यहां इस चित्र में एक पार्क नजर आ रहा है और पार्क के बीचों बीच हमको--

और यहाँ पर ध्यान से देखे तो हमको प्रो-पार्क में पर्थिमा जो फुआरा फाउंटेन --

काफी बड़ा कछुआ है ये और इनकी आप पीठ देखिए ये एकदम मज़बूत और यही इनका कवच रहता है जो इनको--

दुश्मन के वार से बचता है इनपे चाहे भरी से भरी चीज़ भी गिर जाये पर इनको कुछ नहीं होगा क्युकी ये कवच जो है इनका एकदम पत्थर जैसा बना रहता है जो इनको --

और उसी के ऊपर बच्चो के फिसल ने वाला झूला भी बना हुआ है।

हम सड़क के दूसरी ओर हम एक दफ्तर देख रहे हैं जो काफी मात्रा में विशाल है काफी बड़ा है और यहां पर देख सकते हैं उसका गेट वाला हिस्सा में दिखाया जा रहा है।

जो बहुत ही सुन्दर लगेगा नज़ारा बहुत ही अच्छा लगेगा और पार्क के चारो तरफ पेड़ ही पेड़ नज़र आ रहे हैं और पार्क की दूस --

और बेंच के आस पास जो काफी घास तो नहीं है क्योंकि वहाँ लोग बैठते है तो पैरों के रगड़ने की निशान की वजह से वहाँ की घास हट गई है।

ये एक बहुत ही ट्रेंडी शू रूम नजर आ रहा हैं लेडीज और गेंट्स वियर का जहाँ पर हम बाहर के शीशो के से ही देख सकते हैं कि कपड़े कितने स्टाइल्स दिख रहे हैं।

और दुकान भी बहुत बड़ी हैं आकार में और काफी लाइटिंग से सजाया गया हैं उसको और आप देख सकते हैं इस दुकान का जो नाम भी हैं उसके म एकदम --

हम सडक देख रहे हैं सड़क सीधी जा रही हैं और आगे जा के चौराहा हैं यानि चार दिशा की सड़के जहाँ नजर आए बाए दाए आगे पीछे --

और हाथ जोड़ के प्राथना कर रहे है ताकि उनकी सब समस्याओ को प्रभु एक दम श--

और उसके पीछे भी एक युवक का है तस्वीर में काफी अँधेरा है इसलिए उनकी अ जो सूरत है सकल है--

स्टॉक मार्केट का यानि ट्रेडिंग वगेरा का वो मॉनिटर में डिस्प्ले वगेरा नज़र आरहा है जिस --

इस तस्वीर में हम किसी रेस्टोरेंट या ढाबे का तस्वीर देख रहे है जहा पर लाल कुड़सी लाल टेबल लगा हुआ है और बिच में पेड़ लगाए इस ढाबे के आगे जो --

इस को ढका गया है ताकि लोगो को आने जाने लोगो को व खाने पिने वाले लोगो को धुप ना लगे।

और वो लोग शांति से अपना खाना वाना खा सके और--

फ्लैट्स बने है यानि कमरे बने है जो लोग जहां लोग रहते है और यहाँ पर जो उसका गेट बना हुआ है हमको वो गेट जो --

नज़र आ रहा है जो यलो कलर से और व्हाईट कलर के अ कॉम्बिनेशन से पेंट किया गया है और उसको लोहे की--

पूरी नहीं हुई है तो जब ये पूरा सज जाएगा तब ये और भी अच्छा लगेगा।

टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी यहाँ पे जो एक दफतर हैं यहाँ पर टूरिज्म का डेवलपमेंट यानी आने जाने वाले पर्यटन का--

और विकास करने के लिए इस बारे में कुछ इन्होने दफ्तर खोला हैं ऑफिस खोला हैं और ये ऑफिस देख सकते हैं एक लाइन से काफी चौड़ा बना हुआ हैं काफी बड़ा--

जिम की तस्वीर देख रहे हैं हम और यहाँ पर जो जिम है यहाँ पर हमको काफी सारे लोग नज़र आ रहे हैं कसरत करते हुए।

और हमारे सामने जो चित्र है जो दिया गया है उसमे हमको ट्रेडमिल मशीन नज़र आ रही है ट्रेडमिल में हमने हमें कहली एक युवक चलता या दौड़ता नज़र आ रहा है।

और यहाँ पर काफी सारे उपकरण है जो हाइफाई यानि हाइटेक है जो हमारी एक्सर्साइज़ यानि कसरत करने मे हमको और भी सहयोग कर--

हम ये जो देख रहे हैं सड़क के दूसरी ओर हमको एक गेट नजर आ रहा हैं और गेट के ऊपर एक चिज या किसी दफ्तर या किसी चीज का बोर्ड लगा हुआ है।